और काउंटर के ऊपर एक बर्थडे कैप भी रखी हुई है और दीवार पर पीछे कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।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

यहां एक शादी का गेट लगा हुआ है और इसके अंदर दो आदमी खडे़ हुए हैं।

और कुछ लाइट भी लगी हुई है इसकी छत में पंखे भी लगे हुए हैं और इनके पास में कुर्सी भी रखी हुई है।

और दिस दुकान के अंदर एक काउंटर भी रखा हुआ है और उसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ है।

इसमें एक जीना है जिस पर स्टील की ग्रिल लगी हुई है और उसके ऊपर कुछ गुब्बारे भी लगे लगे हुए हैं और इसके बाहर साइकल भी खड़ी हुई है।

और इस घर के पास में बहोत से घर भी बने हुए हैं जिसके पास में एक बिजली का खंभा और कुछ पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ के पास में एक टावर भी खड़ा हुआ है।

इसके बीच मे एक टेबल रखी हुई है जिसपर एक कप और कार्ड रखा हुआ है और इसके अंदर एक लकड़ी से बनी स्लैब भी है जिसके ऊपर दो कांच के ग्लास रखे हुए है।

यह एक रोड है और इस रोड पे एक ऑटो खड़ा हुआ है और एक डी_सी_एम भी है।

इसकी दीवारों पर कुछ बॉडी बिल्डिंग के कुछ बैनर भी लगे हुए है।

और इसके अंदर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं और इसके अंदर बहोत ऊंची दो बिल्डिंग भी बनी हुई है।

और ग्राउंड के पास में कुछ घर बने हुए हैं और एक टॉवर भी खड़ा हुआ है।

यह एक दुकान है और इस दुकान के अंदर दो आदमी बैठे हुए है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक रेलवे लाइन है और इसके पास में एक आदमी टंकी पर खड़ा हुआ है।

और उसके बाद में बिल्डिंग भी बनी हुई है जिसमें बहुत सी खिड़कियां लगी हुई है।

यह एक इलेक्ट्रिकल की दुकान है और इस के अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है और इसके अंदर कुछ बल्ब और बिजली के बोर्ड भी लगे हुए हैं।

इसके अंदर एक गट्टे का बोरा पडा़ हुआ है जिसमें बहुत सा सामान रखा हुआ है बोर्ड में चार्जर भी लगा हुआ है।

यह एक खेत है और इसके अंदर एक झोपड़ी है जिसके अंदर एक कार खड़ी हुई है।

और इसमें एक दीवार भी है उसके पास में कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं और इसकी दीवार पे एक डिग्री कॉलेज का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और दूसरी दुकान में बहोत सी कुर्सियां और लोहे की टेबल रखी हुई है।